इसमें दो चम्मच दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पेड़ भी है।

यहां पे बहुत सारे आदमी हैं।

यहां पे सोफा भी है ।

यहां पे दो बच्चे आम के पौधे लगा रहे हैं।

यहां बहोत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

और इसके ऊपर लाइट भी लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे घर हैं।

वह एक फोन की दुकान है।

यहां पे बहोत से भाषा में जसीडीह लिखा हुआ है।

यह एक स्लैक्स प्रिंट की दुकान है।

यहां पे एक सादी की कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है।

लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है उनके पास एक पर्स भी है।

एक बच्चा काला और पीला कलर का कपड़ा पहना है।

बगल में एक घर भी है।

और बहुत किसी का तस्वीर भी दिखाई दे रहा है।